यहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है सामने की तरफ --

यहां पर बहुत सारे टेबल तथा चेयर रखी है।

यहां पर पीछे की तरफ बहोत बड़ा एक समुंदर एक नदी दिख--

यहां पर एक पीले रंग का बोर्ड लगाया गया है।

पीछे की तरफ दीवारों पे पेंटिंग की गई है।

स्टैचू भी है कुछ बोर्ड लगे हैं।

अंदर एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है।

यहां पर सामने की तरफ एक लाल तथा सफेद रंग का सुधा पार्लर है।